बहुत से पौधे लगे हुए हैं जो हरे रंग के दिख रहे हैं देखने में बहुत सुंदर फ्लावर दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और गेट के बाजू में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है और बैनर भी --

और पास में कार भी निकलती हुई दिख रही है रोड में --

स्टैंड में कार खड़ी हुई है और आस-पास पेड़ दिख रहे हैं सामने से रोड गया हुआ है।

और बाहर की तरफ कार स्कूटी खड़ी हुई है यह बहुत ही बड़ी शॉप हैं।

पार्लर के बाहर ऐ. सी. लगा हुआ है और--

यहाँ स्टेट बैंक का बोर्ड भी लगा हुआ है सामने से शटर दिख रही है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहै हैं यह राज स्वास्थ समिति द्वारा--

और यहाँ बहुत से लोग दिखाई दे रहै है कार से विदाई हो रही हैं।

सामने बहुत सारी मशीन नजर आ रही है यहाँ पर एक किरण भी नजर आ रहा है जो पीले रंग का है यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी--

साइड में एक आदमी खड़ा है जो काले रंग का शर्ट पहन रखा है सामने से एक जाते हुए औरत दिखई दे रही है जिसने पीले रंग की साड़ी--

यह बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पांच मंजिल बिल्डिंग है नीचे का रंग क्रीम रंग से रंगा गया है इसमें खिड़कियां भी लगी हुई है।

सामने में कुछ घर नज़र आ रही हैं घर के आस-पास में बहुत सारे पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं यह पेड़-पौधे काफी बड़े-बड़े हैं।